यह एक गांव है इस गांव में कुछ दुकाने हैं।

कॉलेज के बाहर कुछ साइकिले खड़ी हुई है।

कॉलेज की दीवार पर पीला पेंट हो रहा है।

कॉलेज की दीवार पर ऊपर जाली लगी हुई है।

और एजेंसी के बाहर कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं।

और दुकान के सामने से एक आदमी गुजर रहा है।

मंडप में दूल्हा दुल्हन है।

मकान के पास एक सीढ़ी लगी हुई है।

पेड़ पौधों के पास एक बाइक खड़ी हुई हुई है।

यह एक यूनियन बैंक है।

और कुछ आदमी बैंकेट हॉल के अंदर जा चुके हैं।

रूम में एक सीसा लगा हुआ है।

शीशे की किनारी हरे कलर की है।

इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है।

और दो ग्लूकोस की बोतल भी लटकी हुई है।

फ्रिज के पास एक पंखा लगा हुआ है।

ढाबे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

गंगा में दो नैव है।

फ्रिज में ठंडे की बोतल रखी हुई है।

काउंटर के ऊपर लंच बॉक्स रखे हुए हैं और एक छोटा सा कूड़ेदान रखा है।

और कुछ गुब्बारे लग रहे हैं।

यह एक दुकान है। दुकान मर एक मेज है। मेज पर दो गिलास हैं।

यह एक सड़क है सड़क के पास पेड़ लगे हुए हैं और कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

मेज पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

पहाड़ के बीच में एक झरना है।

एक आदमी सेल्फी ले रहा है।